इस चित्र में एक करने की जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सी मशीने रखे हुए है लड़के प्रैक्टिस कर रहे है कुछ लड़के खड़े हुए है।

टायर की दुकान के सामने एक दूकान दिख रही है जहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

साऊस बिक रहा है कंघी बिक रहा है।

इस चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें बत्तख घूम रहे है।

चित्र में एक शॉपिंग का मॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बच्चो की खाने की पीने की चीजे रखी हुई है उसके-उसके अलग-अलग दाम लिखे हुए है।

तालाब के किनारे बहोत से पत्थर पड़े हुए हैं दूर एक पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है रौशनी दिख रही है।

चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में एक बोट दिखाई दे रही है जिस पे दो आदमी बैठे हुए है।

नॉव चला रहे है तालाब में नॉव का अक्स दिख रहा है।

रियल मी सैमसंग वीवो सभी मोबाइल दिख रहे हैं जिओ फ़ोन के ऑफर दिख रहे हैं।

कचड़ा पड़ा हुआ है काम चल रहा है।